वहाँ बाहर हमें बहुत- सी गाड़ियां दिख रही है जोकि बाइक है वह काले कलर की नजर आ रही है।

ये इमेज में हमें एक बस पोर्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे बस पोर्ट पे हमें एक बड़ी- सी दिखाई दे रही है जिसका रंग हमें ग्रे और--

यह इमेज में हमें एक बड़ी- सी रोड दिखाई दे रही है जिसके ऊपर हमें जीप दिख रही है उसके साइड में हमें एक आदमी दिख रहा है जोकि साइकिल से चल रहा है तथा वहाँ पर हमें एक बस पोर्ट दिख रहा है।

ये इमेज हमें एक रेती का ढेर दिखाई दे रहा है जिसके साइड में हमें एक ट्रक दिख रहा है जिसके ऊपर हमें बहुत से मजदूर दिखाई दे रहे हैं वह मजदूर वहाँ पे काम करने आये हैं रेती के ऊपर--

यह इमेज में हमें एक मंदिर दिखाई दे रहा है जो कि एक मैदान के सामने बना हुआ है तथा उस मंदिर के राइट साइड में हमें बहोत से--

यह इमेज में हमें एक लड़का दिखाया जा रहा है जिसके बाल के ऊपर में एक बड़ा -सा कट दिख रहा है वह बाल--

उसमें हमें एक ब्रिज दिख रहा है जिसके ऊपर से एक रेलगाड़ी रे- गुजरते हुए दिख रही है जो कि नीले और पीले रंग की दिखाई दे रही है और रेलगाड़ी बहुत --

यह इमेज में हमें एक बड़ा- सा चर्च दिखाया जा रहा है जोकि सफेद रंग की बिल्डिंग के अंदर बना हुआ है।

-- और बिल्डिंग बहुत बड़ी है तथा उसके आसपास में हमें बहुत ऊंचे -ऊंचे नारियल के पेड़ लगे हुए दिख रहै है वह हरे कलर के है और बहुत ऊंचे पूरा दिख रहा है उनके साइड में हमें बहुत -सी गाड़ियां लगी दिख रही है जोकि बाइक और स्कूटी है।

आसपास हमें बहुत से दीवारे दिख रही है वह दीवारों पर अलग-अलग तरह का किया गया है यहाँ वहाँ बहुत ऊंचा पूरा है।